यह चर्च का फोटो है इस चर्च में बहोत सारे लोग खड़े हैं।

रेस्टोरेंट के बाहर दोनो साइड मे--

इस फोटो में एक सैलून दिखाई दे रहा है सैलून के बाहर --

बहोत से लोग चढ़ रहे हैं यहां पे घास पेड़ पौधे भी है।

और यहां सफेद रंग की भी गाड़ी खड़ी है।